चित्र में मुझे एक रोड दिख रही है चित्र में मुझे--

चित्र में मुझे लड्डू दिखाई दे रहा है चित्र में मुझे अगरबत्ती और मोमबत्ती जलती दिख रही है।

मुझे एक चित्र दिखाई दे रहा है चित्र मे मुझे सब्जी की दुकान दिख रही है।

चित्र में मुझे सीलिंग पर लगा हुआ झूमर दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे स्विमिंग पूल का पानी ब्लू दिख रहा है।

ए_सी लगी हुई दिखाई दे रही हैं चित्र मे मुझे कई सारी लाइटें --

चित्र में मुझे ग्लास और जग दिखाई दे रहा है।